दरवाजा भी खड़ा है और यहां पे ये बहोत ही सारे खाने-पीने की लेज लेज का पैकेट रखा गया है जो कि लेज का पैकेट का कलर --

ब्लैक है और यहां पे बहुत ही सारी बल्ब भी लगाए गए है एल_ई_डी बल्ब ।

एल_ई_डी बड़ी डिस्प्ले है और स्क्रीन टच है और यहां पे सरस्वती माता का--

फोन चला रहा है और यहां पे मंच है जहां पे आदमी भाषण देगा और यहां पे हरमोनिया--

यहाँ पे एक साइकिल लगा हुआ है और दो साइकिल लगा हुआ है और तीन बो बाइक लगे हुए हैं और एक --

यहाँ पे एक बहुत बड़ी पूल है और इस पूल के नीचे से पानी जा रहा है और ये रेलवे का --